सामने एक डांस क्लास का एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर नीचे लकड़ी का कार्पेट टाइप का बिछा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे है।

सामने एक फॉस कुछ लोग दिखाई दे रहे है बर्थडे मनता हुआ नजर आ रहा है एक केक रखा हुआ है और इस टेबल को चारों ओर बैलून से सजाये गए दिखाई दे रही हैं।

जे बड़ी-बड़ी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। बहुत सी औरतें इन्हैं खरीदते हुए और एक आदमी बूढ़ा इनको खरीदते नजर आ रहा --